ये स्टिक फाइल्स के नाम से जाने जाते हैं| यहाँ पर व्हाइट कलर का फाइल्स है येल्लो एंड ब्लू ग्रीन रेड व्हाइट पिंक येल्लो सारे कलर्स हैं यहाँ पे फाइल्स है और आप देख सकते हैं ये कितना सैटीस --

यहाँ तो पानी गर्म करने वाला केतली है और आप देख ही सकते हैं यह एक बहुत ही सुंदर-सा बनाया गया है इस ड्रोल को।